इसमें बहुत सारी कठपुतलियाँ कपड़े पेहेन कर खड़ी है और दो पोस्टर लग रहा है एक साड़ी का एक सूट का।

साइड में बहुत सारे पेड़ हैं एक एंटीना खड़ा हुआ है।